साइड में पेट्रोल पंप दिख रहा है। एक महिला दिख रही है कुछ लोग दिख रहे हैं टू व्हीलर वाहनें दिख रही हैं।

एक इवनिंग की फोटो हैं जिसमें आगें जलती हुई दिख रही है।

एक ट्रॉली खड़ी हैं जिसमे हमें कुछ सामान जा रहा है बड़ी-बडी बोड़े जा रही हैं दो ठो शटरे दिख रही हैं ब्लू कलर की जिसमे एक शटर बंद है एक शटर खुली हैं एक --

एक बड़ा सा बिजली का टावर दिख रहा है जिसमें बहोत सारे बिजली के वायर दिख रहे हैं। नीचे साइड़ --

छोटी-छोटी घासें दिख रही हैं दीवाल की बॉउन्ड्री दिख रहीं है बड़े-बड़े मकान दिख रहे हैं मकान की खिरकियाँ दिख रही हैं आइट साइड बड़े-बड़े झाड़ दिख रहे हैं खुला आसमान दिख रहा है आसमानी कलड़ का बिल्डिंग की खिरकियाँ दिख रही--

मेले की तस्वीर है जिसमे एक बड़ा स गोल वाला झूला लगा हुआ है जिसमे कुछ लोग बैठे हुए है साइड मे भी कुछ झूले लगे हुए है।